यँहा सामने एक मूर्ति नजर आ रही है इसपे काफी सारे हार लगे हुए है और ऊपर कुछ मुकुट वगेरा लगा हुआ है पूरी शकल बनी है।